बसों में बैठने के लिए कुछ आदमी तैयार हैं।

बस स्टैंड के ऊपर एक टीन शेड की छत भी नजर आ रही है।

उसके बाहर कुछ महिला और पुरुष मौजूद हैं।

सरकारी दफ्तर के सामने कोई एक कांच का गेट भी है।

यह सुखदेव मुख लाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय हाजीपुर है।

यहां पर नदी में कुछ व्यक्ति नाव चला रहे हैं।

जिसमें पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं।

यहां पर कुछ सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने एक लाल रंग की कुर्सी भी नजर आ रही है।

उस पर भी कुछ कार्टून बने हुए हैं उस पर एडमिशन ओपन भी लिखा हुआ है।

तीन साइड में एक पंखा भी लगा हुआ है और नीचे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

कुर्सी मेजें भी मेज रखी हुई कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर एक महिला व एक पुरुष माइक में कुछ बोल रहे हैं।

यहां पर चार नॉनवेज कबाब रखे हुए हैं।

कुछ चल फिर भी रहे हैं इसमें एक पेड़ है कुछ बच्चों के मनोरंजन के कुछ साधन हैं।

इसमें घूमते हुए और ऊपर से नीचे लुडकते हुए जैसे कुछ साधन लगा हुआ है।

यह मारुति सुजुकी कार का शोरूम है।

कुछ व्यक्ति उनके पास में भी खड़े हुए हैं।

के ऊपर एक चावल का भिगोना रखा हुआ है।

बराबर में कुछ आदमी आते जाते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने एक खूबसूरत मैदान भी नजर आ रहा है।